और यहाँ मुर्गी जाल में बंद है।

यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है देखने से ऐसा लग रहा है की यह कोई घुमने वाली जगह जैसी लग रही है सामने एक सड़क है।

और बहोत बड़े-बड़े खम्बे है वाइट कलर का पेंट किया गया है और पेड़-पोधे दिखाई दे रहे है आस-पास और बहोत लम्बा सीढ़ी है यहाँ पर--

सारे रखे हुए है यहाँ पर और यहाँ पर--

बहुत बड़ा बोर्ड लग हुआ है दीवार पे --

सामने एक बहुत बड़ा तालाब जैसा दिखाई दे रहा है और उसके आस-पास बहोत सारे--

और यहाँ सामने एक आदमी खड़ा है जिसका सिर्फ हाथ दिखाई दे रहा है।

बाजार लगे हुए है बहुत सारे सामाने यहाँ पर दिखाई दे रही है और बहुत बहुत अमाउंट में यहाँ पर--

और यहाँ पे बहुत सारे बैलून है अलग - अलग कलर के बहुत सुंदर लग रहा है देखने में --

बोहत सुंदर लग रहा है यहाँ का दृश्य--